और ये बहोत सारे सीढ़ियां भी देखने को मिल रही है यहाँ पर बहोत सारे लोग भी देखने को मौजूद हैं।

और कई सारे बस और टेंपू भी देखने को मिल रहे है।

और इसमें बहोत सारे खिड़कियां भी देखने को मिल रही है।

सामने एक बारा मकान देखने को मिल रहा है जिसमें छोटे छोटे घास देखने को मिल रहे हैं।

और यहां बहोत सारे बोरी भी नजर आ रही है जिसमें आलू प्याज और लहसुन--

सामने एक बड़ा जिम हॉल देखने को मिल रहा है।

और बहोत सारे छोटे छोटे मंदिर भी देखने को मिल रहे हैं।

और यहां पर बहोत सारे कुर्सियां भी देखने को मिल रही है जिसका कलर गोल्डन है।

जो कि लाल और व्हाइट कलर से पेंट किया गया है।

और अंदर दीवाल का कलर पीला कलर से पेंट किया गया है और एक छोटा पंखा भी देखने को मिल रहा है।

और निचे कई सारे बाईक और ई स्कूटी भी देखने को मिल रहे है बाईक का कलर ब्लैक हैं।

और यहां पर कुछ मिरर देखने को मिल रहे हैं।

सामने एक बड़ा सा रोड देखने को मिल रहा है।

सामने एक बड़ा सा रूम देखने को मिल लहा है।

हमें एक बहोत बड़ा महल देखने को मिल रहा हैं जो कि पीला कलर से पेंट किया गया हैं।

एक गुलाब का फूल भी देखने को मिल रहा है और--